बहुत सारे मोटरसाइकिल लगे हैं और उसके बगल में एक रूम है।

फूल लगा है और बैंगनी कलर का सजावटी है।

यह एक रोड है जो की पक्की नहीं है और उसके--

यह एक रोड है और वो पक्की रोड नहीं है और उसमें--

तीन लोग बैठे दो लोग बैठे हुए हैं और एक खड़ा है।

गिर रहा है और उस पानी में--

यह एक कपरे का दुकान है और वहां पर दो आदमी का पुतले रखा हुआ हैं।

और दीवारें पे फूल भी टंगा हुआ है और वहां पर भी

और उसके बगल में पानी भी बहुत सारे हैं जिसका रंग हरे और असमानी कलर का दिख रहा हैं और आदमी का --